इस तस्वीर में बहोत बड़ा ग्रा ग्राउंड नग नजर आ रहा है उसके पीछे पेड़ पौधे भी हैं।

इस दृश्य में बहोत बढ़िया सुंदर सा झरना भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर बहोत ही बड़ा आसमान न निगाह रहा है।

मंदिर ऐसा लग रहा है मंदिर बड़ा ही पुराना है।